जिसके अंदर एक मरीज के लेटने के लिए कुर्सी लगी हुई है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर के गद्दे लगे हुए हैं व कमरे के अंदर एक --

यह दृश्य शिवजी की सुंदर मंदिर का दिखाया गया है।

यह दृश्य एक मदरसे का दिखाई दे रहा है जिसके अंदर काफी सारे बच्चे बैठे हुए पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं।

वे उसके अंदर डब्बेदार धारियां बनी हुई हैं।

हमें एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एस_बी_आई ए_टी_एम लिखा है।

वे साइड की दीवार पर पतंजलि स्टोर एवं चिकित्सालय निशुल्क परामर्श लिखा हुआ है।

यह द्रश्य एक डी_जे बॉक्स का दिखाइ दिया गया हैं।

हमें काफी सारी वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

लोगो डिजाइन ग्राफिक डिजाइन सोशल मीडिया डिजाइन --

एक मेज पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक काले रंग की बोतल में--

पत्तियां बनी हुई हैं मोर पंख के आकार की जिसमें हरा लाल नीला रंग दिखाई दे रहा है।

बत्तीस डेंटल क्लिनिक परफेक्ट रेडियंस हेयर स्किन एंड लेजर सेंटर लिखा हुआ है वे --

सफेद रंग की वे जींस नीले रंग की हैं सामने बोर्ड पर वेलकम द स्मार्ट वर्कशॉप --